फोटो कॉपी की दुकान दिखाई--

दिखाई दे रहीं हैं नदी के अंदर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

उनके आस पास माता जी उनकी मूर्ति भी रखी दिख रही है।

दिखाई दे रही है यहां भिंडी रत आलू गिलकी ककड़ी बैंगन गाजर--

लाइट के बोर्ड्स तार होन रखे हुए दिख रहे हैं।

दे रहा है यहां आस-पास बहुत सारी प्लाइवुड रखी दिखाई दे रही है।

खड़े दिखाई दे रहे हैं। यहां एक ए_टी_एम --

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है। यहां पेड़ पौधे के आड़ में एक येलो कलर का बुलडोजर --

पत्थर की दीवालो जैसा बना हुआ है यहां एक भैया--

के आसपास पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं।